और काफ़ी सारे दूर दूर तक पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक अह बड़ा सा टेबल है।

और एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर हाथ में कुछ सामान लेकर अपनी आगे की ओर देख रहा हैं।

इसके दीवाल पर काफी सारे कुछ लिखे हुए हैं।

और इसमें पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं और उसके बगल में एक नीला टाइप का ड्रम रखा हुआ है।

यह एक पार्क है जिसके चारों तरफ से घिरा हुआ है।

और यह एक झरना है जिससे ऊपर के और पानी भीग रहा है व एक लाइट भी बर रहा है।